यह तस्वीर मे एक आदमी बागवानी करता हुआ दिख रहा है जिसमे आदमी एक आम का अ पेड लगा रहा है ।

इस तस्वीर में छट घाट जाने से पहले घरसे निकल कर हम मा-माथे पर जो डाली लेके निकलते है वो-वोही घरके निकलने बाद का तस्वीर है पूरा परिवार साथ में है।

प्लास्टिक मे मछलिया रखी हुई है पीछे बहुत सारा साईकिल खडा है और सामने में बहुत सारे कस्टमर ख-खड़े हुए हें।

यहा एक दो लडका है जो जिम के अंदर अपना फोटो खिचवा रहा है साथ मे यह मिरर मे देख सेल्फी क्लि फोटो क्लिक करने वाले को देख रहा है।